पेड़ बगैरह दिख रहे हैं | भारतीय स्‍टेट बैंक का एक नाम बैनर लगा हुआ दिख रहा है | बोहत सारे कागज चिपके हुए दिख रहे हैं | मकान दिख रहा हैं ।

रंगोलिन के कलर दिख रहा। बहोत सारी लड़किया दिख रही हैं। पिंक कलर का बैग रखा हुआ दिख रहा है।

लाइटे दिख रही है | कलर दिख रहे है | बैनर दिख रहे हैं | पर्दे बगैरह दिख रहे हैं | रेड कलर दिख रहा है | ऑटो मटियल दिख रहा है | कांच बगैरह सीटे दिख रही हैं ।

रोड पे दिख रहा है | रोड पे कलर बगैैरह दिख रहे हैं | पिंक कलर ठेले दिख रहे हैं | बोहत सारे रिक्‍शे साड़ी टगीं हुई दिख रही है | लेडीज़ जेन्‍ट्स दिख रहे हैं | ठेले पे फट --

व्‍हाईट कलर रेड कलर पुता हुआ --

फल्‍ली बिछी हुई दिख रही है | लाइट टाईप का दिख रहा है | झंझरी वाली दिख रही तिरपाल बिछ रही व्‍हाईट कलर की |